यहा पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवार का कलर वाइट है यहा पे रोड भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है यहा पे बोर्ड भी लगा हुआ है और कुछ भी दिखे दे रहे है।

यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाइ दे रहा और रेड और क्रीम कलर का कार्पेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं मूर्ति भी दिखाई दे रही है और कुछ परदे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर की बाल्टी भी रखी हुई है।

एक बच्ची बैठी हुई है जिसने ब्लॅक कलर के कपड़े पहन रखे है यहा पे बाल भी दिखाई दे रहे है और--

भी दिखाई दे रहे है जिस पे दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत सारे फूलों के बाग भी दिखाई दे रहे है जिनका कलर पिंक रेड और व्हाइट है।

भी एक छत दिखाई दे रही और कुछ दोरिया दिखाई दे रही है यहा पे कुछ लोग खड़े हुए वी दिखाई दे रहे है उयर कुछ पेड पौधे वी दिखाई दे रहे है नीचे हरी घाँस भी --

यहाँ पे मुझे जमीन दिखाई दे रही है फिर कुछ पौधे भी उगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे फूल भी दिखाई--